यहां पे मास्क लगा के खड़े हैं टेबल तीन चार हैं ये।

पत्थरो के बीच में बहोत अच्छा लग रहा है।

ब्राउन में ब्राउन कलर किया गया है बहुत सारी लाईन्स व्हाईट करके --

घड़ी में भी वो ही है पोस्टर लगा हुआ है पिंक कलर का जिसमें वो बच्चा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सीढ़ी ल--

और ये अंकल के पीछे जा रहे है बहुत सारी गोलियां रखी है ये एक गोडाउन है ।

ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अभी कोई भी यात्री नहीं है ट्रेन भी नहीं आई है लाइट चालू है।